और इसके वायल वायल पेपर बहुत अच्छा है।---

फोटो में एक ऑटो और एक टोटो है।

इस फोटो में एक बड़ा सा द दरिया है दरिया के उस तरफ एक बड़ा सा ब्रिज है।